रेड कलर का नीचे डला है। यहाँ डंबल्स दिख रहे हैं। येल्लो कलर के कुर्सियें दिख रही हैं। इनने भैया ने सफ़ेद कलर को फोन पकड़े हैं।

यहाँ एक मेला लगा है यहाँ झूले दिख रहे हैं मिक्की माउस दिख रहा है बहोत भीड़ लगी है। कुर्सिये दिख रही हैं। कुर्सिये में कुछ लोग बैठे दिख रहे हैं कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं।

ये ए स्कूल में कुछ कार्यक्रम हो रहा है यहाँ मैडम लोग हैं साड़ी पहनी हैं। कुछ बच्चे लोग हैं कुछ बनाए हैं। यहाँ बलून दिख रहें हैं। यहाँ दीवाल दिख रही खिड़की दिख रही है रस्सी दिख रही है।

ब्रेंच दिख रही है टेबल दिख रही है वाइट कलर की वाइट कलर की दीवाल है। मैडम ने रेड कलर की साड़ी पहन --